खेत जैसा दिखाई दे रहा है जिसमे कुछ हरा टाइप का लगा हुआ हैं।

माला के उस तरफ एक आदमी दिखाई दे रहा है उसके पीछे भी एक आदमी दिखाई दे रहा हैं ।.

इस पिक्चर में बहुत बड़ी नदी दिखाई दे रही हैं।

सामने सफ़ेद कलर के पत्थर के टुकडे दिखाई दे रहे हैं।

रखे हुए भी दिखाई दे रहे हैं बाहर पे --

आस-पास बॉउंड्री खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं।

सामने एक बड़ा सी बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं जिसमे कुछ खिडकियां बनी हुई दिखाई दे रही हैं और एक गेट हैं।

सामने एक बोर्ड भी है नीले कलर का एक घर दिखाई दे रहा है जोकि सफेद--